वो लिखा हुआ है बिजया ऑटो बैटरी ई-रिक्शा एजेंसी --

यहाँ पर कोट पैंट और टाई लग कर एक आदमी खड़ा हुआ है और --

और इसने हाथ में एक औजार पकड़ा हुआ है जिसमे आले आगे पिले रंग --

यहाँ पर एक इमारत बनी हुई है जिसमें ऊपर की तरफ लोग खड़े हुए हैं। एक पंडाल लगा हुआ है जिसमें --

अन्य व्यक्ति है चैनल लगा हुआ हैं दरवाजा लग हुआ है और एक महिला खड़ी है जिसने मास्क पहना हुआ और एक महिला बैठी हुई है।

कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं। लड़के खड़े हुए हैं। गुब्बारे लगे हुए हैं सफेद रंग के नीले रंग के और यहाँ पे डंडे लगे हुए --